इस इमेज में समुन्द्र है और नीले आसमान है जिसकी वजह से नीले-नीले पानी दिख रहे हैं और एक नाव है जिस में दो मलाह बैठे हुए हैं दोनों नाव को चला रहे हैं।

इस इमेज में यह एक ग्रॉसरी स्टोर है और उसके सामने एक बार कोड लगी हुई है इस बार कोड को स्कैन करके सभी लोग पेमेंट करते हैं।